नमस्कार दोस्तों अन्य प्रकार के प्लॉट्स पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
अभी तक हमने केवल एक प्रकार की प्लॉटिंग देखी है
अतः इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और प्रकार के प्लॉट्स देखेंगे
इस ट्यूटोरियल के अंत होने पर आप निम्न करने में सक्षम होंगे स्कैटर प्लॉट बनाने में पाई चार्ट्स बनाने में बार चार्ट्स बनाने में लॉग लॉग प्लॉट्स बनाने में मैटप्लोटलिब हेल्प इस्तेमाल करने में अतः चलिए स्कैटर प्लॉट से शुरू करते हैं
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि फाइल्स से डेटा लोड करने पर और डेटा प्लॉट करने पर ट्यूटोरियल पूरा कर लें
स्कैटर प्लॉट में डेटा बिन्दुओं के एक समूह की तरह प्रदर्शित होता है जहाँ प्रत्येक बिंदु उसकी स्थिति क्रमशः क्षैतिज अक्ष रेखा और लम्बवत अक्ष रेखा पर निर्धारित करता है
इस प्रकार के प्लॉट को स्कैटर चार्ट स्कैटर डायग्राम या स्कैटर ग्राफ भी कहते हैं
इससे पहले कि हम आगे जाएँ अपना आईपाइथन इन्टरप्रेटर शुरू करते हैं
अतः टाइप करें इपिथॉन हाइपेन पाइलैब एक स्कैटर प्लॉट बनाएँ जो कम्पनी आ के लिए वर्ष 2000 2010 तक के लिए लाभ प्रतिशत दर्शाए
इसके लिए डेटा फाइल company a dataटीएक्सटी में उपलब्ध है
टाइप करें कैट स्पेस स्लैश होम स्लैश फॉसी बैक्सलैश other प्लॉट स्लैश company a dataटीएक्सटी एंटर
डेटा फाइल में दो लाइनें हैं जिसमें प्रत्येक लाइन में वैल्यूज़ का एक समूह है पहली लाइन वर्षों को दर्शाती है और दूसरी लाइन लाभ प्रतिशतों को दर्शाती है
स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें लोडटीएक्सटी कमांड का इस्तेमाल करके फाइल से डेटा लोड करने की आवश्यकता है
टाइप करें yearप्रॉफिट लोडटीएक्सटी विथिन ब्रैकेट इन सिंगल क्वोट स्लैश होम स्लैश फॉसी स्लैश other प्लॉट स्लैश company a dataटीएक्सटी कॉमा dtypetype इन ब्रैकेट int एंटर दबाएँ
डिफ़ॉल्ट रूप से लोडटीएक्सटी वैल्यू को फ्लॉट में बदलता है
dtypetype विथिन ब्रैकेट int लोडटीएक्सटी में आर्ग्युमेंट वैल्यू को पूर्ण संख्या में बदलता है जैसा कि हमें ट्यूटोरियल में आगे डेटा पूर्ण संख्या में चाहिए
अब स्कैटर ग्राफ बनाने के लिए हम फंक्शन scatter इस्तेमाल करेंगे
टाइप करें स्कैटर विथिन ब्रैकेट यियर कॉमा प्रॉफिट और एंटर दबाएँ

ध्यान दें कि scatter फंक्शन को हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किये हैं पहला x कोआर्डिनेट में वैल्यूज़ वर्ष हैं और दूसरा y कोआर्डिनेट वैल्यूज़ लाभ प्रतिशत हैं
लाल ईंट मार्कर्स के साथ कम्पनी a dataटीएक्सटी में जो डेटा है उसका एक स्कैटर प्लॉट बनाएँ
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और विडियो पुनः चलायें

अब उसी डेटा के लिए एक अन्य प्रकार का प्लॉट देखते हैं पाई चार्ट
एक पाई चार्ट या एक वृत्त ग्राफ एक वृत्ताकार ग्राफ है जो त्रिज्य खंडों में विभाजित है जो अनुपात स्पष्ट करता है

फाइल company a dataटीएक्स के ही डेटा के साथ एक पाई चार्ट बनाएँ जो कम्पनी आ के लाभ प्रतिशत को दर्शाए
अतः उस डेटा को फिर से इस्तेमाल करें जिसे हमने पहले फाइल से लोड किया था
हम फंक्शन pie का इस्तेमाल करके पाई चार्ट बना सकते हैं
अतः टाइप करें पाइ विथिन ब्रैकेट प्रॉफिट कॉमा labelsyear ध्यान दें हमने फंक्शन pie में दो आर्ग्यूमेंट्स पास किये हैं
पहला वैल्यूज़ और दूसरा लेबल्स का समूह जिसे पाई चार्ट में इस्तेमाल करना है
उसी डेटा के साथ रेड कलर में पाई चार्ट बनाएँ प्रत्येक वेज के लिए व्हाइट रेड ब्लैक magentaयेलो ब्लू ग्रीन क्यान येलो मेजेंटा और ब्लू क्रमशः
यहाँ विडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो पुनः चलायें
अब चलिए बार चार्ट्स देखते हैं
बार चार्ट या बार ग्राफ एक चार्ट है जिसमें वर्गाकार बार्स की लम्बाई उनकी प्रदर्शित वैल्यूज़ के अनुपात में होती है
एक बार चार्ट बनाएँ जो फाइल company a dataटीएक्सटी के ही डेटा के साथ कम्पनी आ के लाभ प्रतिशत को दर्शाए
अतः डेटा जिसे हमने फाइल में पहले लोड किया था उसे फिर से इस्तेमाल करते हैं
हम बार चार्ट फंक्शन bar का इस्तेमाल करके और एंटर दबाकर प्लॉट कर सकते हैं
अतः इस कोष्ठक के अंदर आप बार यियर comma प्रॉफिट रख सकते हैं
ध्यान दें कि फंक्शन bar को कम से कम दो आर्ग्यूमेंट्स की आवश्यकता है एक x कोआर्डिनेट में वैल्यूज़ और दूसरा y कोआर्डिनेट में वैल्यूज़ जिसका इस्तेमाल बार की लम्बाई निर्धारित करने के लिए होगा
एक बार चार्ट प्लॉट करें जो भरा नहीं गया है और जो 45 डिग्री तिरछी लाइनों से बना है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है
चार्ट के लिए डेटा फाइल company a dataटीएक्सटी से प्राप्त किया जा सकता है
टाइप करें बार विथिन ब्रैकेट यियर कॉमा प्रॉफिट कॉमा fillFalse कॉमा hatch विथिन सिंगल क्वोट स्लैश एंटर दबाएँ
अब चलिए लॉग लॉग प्लॉट देखते हैं
लॉग लॉग ग्राफ या लॉग लॉग प्लॉट संख्यात्मक डेटा का एक टू डायमेंश्नल ग्राफ है जो क्षैतिज और लम्बवत दोनों ही एक्सेस पर लॉगरिद्मिक स्केल्स इस्तेमाल करता है
अक्ष के नॉन लिनीयर स्केलिंग के कारण य एएक्स ब प्रकार का फंक्शन लॉग लॉग ग्राफ पर एक सीधी रेखा की तरह दिखता है
एक से बीस तक एक्स के लिए y5 इंटो एक्स3 का लॉग लॉग चार्ट प्लॉट करें
इससे पहले कि हम वाकई में प्लॉट करें इसमें आवश्यक पॉइंट्स का अनुमान करते हैं
एक्स लिनस्पेस विथिन ब्रैकेट्स 1 कॉमा 20 कॉमा 100 य 5 इंटो एक्स इंटो 3 लॉग लॉग फंक्शन का यहाँ सिन्टैक्स है
अब loglog फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लॉग लॉग चार्ट प्लॉट कर सकते हैं
टाइप करें लॉगलॉग विथिन ब्रैकेट्स एक्स कॉमा य एंटर दबाएँ
एक सामान्य प्लॉट और लॉग लॉग प्लॉट के बीच अंतर समझने के लिए फंक्शन प्लॉट इस्तेमाल करके एक और लॉग लॉग प्लॉट बनाते हैं
अतः टाइप करें फिगर विथिन ब्रैकेट्स 2 फिर टाइप करें प्लॉट विथिन ब्रैकेट्स एक्स कॉमा य अंतर साफ़ हैतो यह log log प्लॉट था
अब हम कुछ और प्लॉट्स देखेंगे और इंटरनेट पर मैटप्लोटलिब के हेल्प को कैसे एक्सेस करें यह भी देखेंगे
मैटप्लोटलिब के लिए हेल्प matplotlibsourceforgenetcontentsएचटीएमएल से पाया जा सकता है
matplotlibsourceforgeनेट स्लैश यूजर्स स्लैश screenshotsएचटीएमएल और matplotlibsourceforgeनेट स्लैश galleryएचटीएमएल इस पर भी अन्य प्लॉट्स देखें जा सकते हैं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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे 1
scatter फंक्शन का इस्तेमाल करके एक स्कैटर प्लॉट बनाएँ
2
pie फंक्शन का इस्तेमाल करके एक पाई चार्ट बनाएँ
3
bar फंक्शन का इस्तेमाल करके एक बार चार्ट बनाएँ
loglog फंक्शन का इस्तेमाल करके एक लॉग लॉग ग्राफ बनाएँ
मैटप्लोटलिब ऑनलाइन हेल्प को एक्सेस करें
अतः यहाँ आपके के लिए कुछ स्वतः निर्धारण सवाल हैं
स्कैटर एक्स कॉमा य कॉमा colorblue marker डी और प्लॉट एक्स कॉमा य कॉमा colorb कॉमा marker d एक ही चकारी करते हैं
सही है या गलत
लम्बवत रेखा के साथ एक बार चार्ट बनाने के लिए क्या स्टेटमेंट हो सकता है
1बार विथिन फंक्शन एक्स कॉमा य कॉमा colorin सिंगल क्वोट द्व कॉमा hatch स्लैश 2
बार विथिन ब्रैकेट एक्स कॉमा य कॉमा fillFalse कॉमा hatchslash स्लैश बार विथिन ब्रैकेट एक्स कॉमा य कॉमा fillFalse कॉमा hatchin सिंगल क्वोट बार विथिन ब्रैकेट एक्स कॉमा य कॉमा color विथिन क्वोट द्व कॉमा hatchsingle क्वोट और अब उत्तर हैं 1
गलत दोनों फंक्शन्स एक ही प्रकार का प्लॉट नहीं बनायेंगे
2बार एक्स कॉमा य कॉमा fillFalse कॉमा hatchbar लंबवत्त रेखाछाया के साथ एक बार चार्ट बनाने के लिए सही विकल्प है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
मैं रवि कुमार आई आई टी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद